यहाँ पर एक रूम है और रूम में घडी लगी हुई है दीवारों पर दो और यहाँ पर एक अ पेंटिंग है जो दीवार पर लगी हुई है और इस रूम में एक अ मंदिर बना हुआ है।

ऊपर एक पेट्रोल पंप बना हुआ हेगा जो पेट्रोल पंप बहुत छोटा सा है इसमें सिर्फ एक मशीन लगी हुई हेगी ।

यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई है ये काफी बड़ी फैक्ट्री है ये और ये फैक्ट्री का पीछे का हिस्सा होगा जहाँ पर अ कुछ घास-पूस होगी और कुछ जंगली पेड़ निकले हुए है।

यहाँ पर अ अ मैरिज हॉल बना हुआ है जिसके एंट्री गेट बोहोत बड़ा सजा हुआ है बो ग्रैंड एंट्री गेट बना हुआ है यहाँ पर।